टीन शेड गिरा हुआ है।

लकड़ी के डंडे पड़े हुए हैं।

पीछे पहाड़ में से डण्डी लिकड़ रही है।

कुछ ए_सी लगी हुई है।

कुछ यहां पर यहां पर साड़ी पहन रखी है।

कुछ फूल फाल से है।

कुछ बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं।

साइड में कुछ पूल है।

यहां पर एक रस्सी दिख रही है।

एक टावर दिख रहा है।

कुछ वर्कर्स हैं यहां पर।

एक मीटर लगा हुआ है।

एक वूफर सा रखा हुआ है।

यहां पर एक ग्राउंड है।

एक दुकान में यहां पर कैरेट रखी हुई है।

पीछे कुछ पानी में रास्ता बना हुआ है।

कुछ बेड रखे हुए हैं।

पीछे एक बेड पड़ा हुआ है गद्दे है।

यहां पर एक रोड है।